जो काफी बड़ा बनाया गया है ये दिल्ली का स्कूल --

और चारो तरफ पेड़ पौधे लगाए गए है जो बहोत ही खूबसूरत लग रहे है देखने में--

यह एक मार्केट है जहाँ सब्जियां बेची जाती है इस मार्केट में जहाँ लोग खरीदने के लिए आते हैं इस मार्केट में सब्जी --

में बाल काटते हैं जिन्हें लोगों को बहुत अच्छा लगता है।

जिनको बहुत ही अच्छे से बनाया गया है।

और यहाँ ये सब फोटो खींचाये है जो देखने में काफी सुंदर इ लोग का फोटो लग रहै हैं।

जिससे होकर घर की अंदर घुसते हैं इ गेट से होकर और काफी अच्छा दिखने में लग लग रहा है।